और डैम के गेट हलके से खुले दिखाई दे रहें है कुछ पानी बहता हुआ आता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारे पत्थर आइड साइड पडे दिख रहें है कुछ झाड़ी इलाका दिख रहा है। नदी के रेलिंग के ऊपर दो रेलिंग और दिखाई दे रही है। नदी --

उसके यहाँ कोने पर एक ट्यूबलाइट लगाई दिख रही है जो वाइट कलर की दिख रही है बनाया दिख रहा है सामने एक मकान दिख रहा है पीछे दो टंकियां जिसको स्टेंड के ऊपर रखा गया दिख रहा है।

यह किसी प्ले ग्राउंड का फोटो दिख रहा है जिसके अन्दर बाउंड्री वोल बनी हुई बाउंड्री वोल के ऊपर सफेद और लाल कलर किया गया है उसके ऊपर लोहे की तारों से रेलिंग बनी हुई दिख रही है।

यह एक नदी या तलाब का फोटो दिख रहा है जिसके कोने पर वह बिल्डिंग बनी दिख रही है बिल्डिंग के पीछे का हिस्सा दिख रहा है उसके अंदर कुछ की चीज क्या दिख रही है जिसमें कांच लगी दिख रही है।

लाल कलर की चेयरे दिख रही है दो और कुछ बेग रखे दिख रहे है कॉपी-किताबे पड़ी दिख रही है और कुछ बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है सामने एक चेयर दिख रही है और कुछ लाल कलर --